अभी मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं लेकिन पास में एक अकेले अगरबत्ती भी दिखाई दे रही है।

यह बीकानेर के तालगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

एक ट्यूबवेल भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें काले कलर का पाइप भी डला हुआ है।

वाहन खड़े है दुपहिया वाहन भी बहुत सारे खड़े हुए हैं।

घने पेड़ पौधे एवं दूब लगाई हुई है और दूब के पास --

यह एक गार्डन की तस्वीर है जिसमें गमलों के अंदर तरह तरह के पौधे भी रखे हुए हैं और --

टेबल के ऊपर उत्कर्ष कोचिंग का बैग भी रखा हुआ है और इनवर्टर भी लगा हुआ है।

यह एक लोहे का कारखाना है जिसमें तीन लोग --

इसकी एक खिड़की भी है और पास में एक जुला भी लगा हुआ है।

इसके जमीन मे दूब भी लगी हुई हैं इसके पास मे एक स्विमिंग पूल भी है और --

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसके अंदर साड़ियां दिखाई दे रही हैं।

और लहंगे भी दिखाई दे रहे हैं इस दुकान के बाहर एक पौधा भी रखा हुआ है।

जिसमें कॉपी किताब एवं घरेलू सामान भी उपलब्ध है इसमें एक काउंटर है और एक स्टूल भी है।

हार्डवेयर के समान उपलबध है ये पी_वी_सी पाईप के टुकड़े भी उपलवध है और इसमें एक --

बीकानेर की पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज की गेट का फोटो है जिसमें एक गेट अंदर की ओर खुला है।

ब्लैक बनियान एवं ब्लैक लोअर पहनी हुई हैं और उसके हाथ में एक फोन लिया हुआ है जिससे ये --

या किसी फंक्शन में गए हुए हैं इनके पीछे एक टेंट लगया हुआ है टेंट के ऊपर फूल की भी सजावट की हुई है।

जिसके काउंटर के ऊपर नाम लिखा हुआ है हीरालाल उस काउंटर के ऊपर --